लिबरऑफिस बेस के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे किः अन्य दाता सोर्सेस डेटा सोर्सेस को एक्सेस कैसे करें
odb डेटाबेसेस को पंजीकृत कैसे करें
दाता Sourcesडेटा सोर्सेस को कैसे देखें
और दाता सोर्सेस डेटा सोर्सेस को राइटर में इस्तेमाल कैसे करें
देखते हैं कि कैसे हम बेस में अन्य दाता सोर्सेस डेटा सोर्सेस को एक्सेस करते हैं
लिबरऑफिस बेस डेटाबेसेस के अलावा अन्य दाता सोर्सेस डेटा सोर्सेस को एक्सेस करने की अनुमति देता है
यह इनको अन्य लिबरऑफिस डॉक्युमेंट्स में जोड़ने की अनुमति भी देता है
उदाहरणस्वरुप हम स्प्रैडशीट या सरल टेक्स्ट डॉक्युमेंट को लिबरऑफिस के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं
और फिर इनको लिबरऑफिस राइटर डॉक्युमेंट में जोड़ सकते हैं
उदाहरण के तौर पर लिबरऑफिस कैल्क का इस्तेमाल करके एक उदाहरण स्प्रैडशीट बनाते हैं
स्टार्ट मेन्यू जीटीजीटी अल्ल प्रोग्राम्स पर क्लिक करें और लिब्रियोफिस सूटे मेन्यू खोलें
या यदि लिबरऑफिस पहले से ही खुला है तो नया स्प्रैडशीट खोलने के लिए हम फाइल न्यू और फिर स्प्रेडशीट पर क्लिक कर सकते हैं
अब स्प्रैडशीट में नमूने के तौर कुछ डेटा टाइप करें जैसा चित्र में दिखाया गया है

और इस स्प्रैडशीट को लाइब्रेरीमेंबर्स के रूप में डाइरेक्टरी लोकेशन में सेव करें
अब लोकेशन को याद रखें क्योंकि बाद में हमें अपने उदाहरण में इस फाइल के उपयोग की आवश्यकता पड़ेगी
और हम कैल्क विंडो बंद कर देंगे
ठीक है अब देखते हैं कि हम इस स्प्रैडशीट को लिबरऑफिस बेस से कैसे एक्सेस कर सकते हैं
यह करने के लिए या तो बेस को विंडोज स्टार्ट मेन्यू से खोलें या यदि लिबरऑफिस बेस पहले से ही खुला है तो हम फाइल न्यू और फिर डेटाबेस पर क्लिक करेंगे
अब यह डेटाबेस विजार्ड खोलता है
यहाँ हम कनेक्ट टो एएन एक्सिस्टिंग डेटाबेस पर क्लिक करेंगे
फिर ड्रॉपडाउन पर क्लिक करें
इस सूची में विभिन्न डेटाबेस सोर्सेस डेटाबेस सोर्सेस सोर्सेस पर ध्यान दीजिये जिनको बेस एक्सेस कर सकता है
और हम यहाँ स्प्रेडशीट पर क्लिक करेंगे
और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे
अब ब्राउज बटन का इस्तेमाल करके स्प्रैडशीट को लोकेट करें जहाँ हमने इसे पहले सेव किया था
यदि यहाँ स्प्रैडशीट के लिए कोई पासवर्ड है तो हमें इसे भी देना होगा
यहाँ हमें इसकी ज़रूरत नहीं है
नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें
अब स्प्रैडशीट को एक डेटा सोर्स के रूप में पंजीकृत करते हैं
और इसको एडिटिंग के लिए खोलें
और फिनिश बटन पर क्लिक करें
अब यहाँ एक डेटाबेस नाम दें
लाइब्रेरीमेंबर्स टाइप करें
सेव एएस Type पर ध्यान दीजिये यह ओडीएफ डेटाबेस दर्शाता है जोकि हमारे केस में odb है
और इसे उसी लोकेशन में सेव करें जिसमें स्प्रैडशीट है
यहाँ हमने स्प्रैडशीट को बेस में डेटा सोर्स के रूप में पंजीकृत कर लिया है
अब हम मुख्य बसे विंडो में हैं
यहाँ बाएं पैनल में टेबल्स आइकन पर क्लिक करें
टेबल्स शीट1 शीट2 और शीट3 पर ध्यान दीजिये
शीट1 को खोलने के लिए इस पर डबल क्लिक करें और यहाँ स्प्रैडशीट का डेटा है
अब स्प्रैडशीट को एक्सेस करने के इस तरीके से हम यहाँ कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं
यहाँ हम मौजूदा डेटा पर आधारित केवल डेटा देख सकते हैं या क्वेरीस और रिपोर्ट्स बना सकते हैं
अतः बदलावों को सीधे स्प्रैडशीट में करना होगा
odb डेटाबेसेस को पंजीकृत कर रहे हैं
अब यहाँ अन्य प्रोग्राम्स हैं जैसे openofficeओआरजी जोकि odb डेटाबेस बना सकते हैं
इनको लिबरऑफिस बेस के अंदर इस्तेमाल करने के लिए हमें पहले इन्हें बेस में पंजीकृत करने की आवश्यकता है
किसी भी odb डेटाबेस को पंजीकृत करने के लिए हमें बेस खोलने की आवश्यकता है और टूल्स आप्शंस लिब्रियोफिस बसे और डेटाबेस चुनें
रजिस्टर्ड डेटाबेसेस के अंदर न्यू पर क्लिक करें
ब्राउज करें कि डेटाबेस कहाँ लोकेट है और सुनिश्चित कर लें कि पंजीकृत नाम सही है
और ओक बटन पर क्लिक करें
देखते हैं कि हम लिबरऑफिस में डेटा सोर्स कैसे देख सकते हैं
इसके लिए स्प्रैडशीट का उदाहरण देखें जिसे हमने बेस में पंजीकृत किया था
अब हम इसे लिबर ऑफिस राइटर या कैल्क में इस्तेमाल कर सकते हैं
उदाहरणस्वरुप देखते हैं कि इसे लिबर ऑफिस राइटर में कैसे देख सकते हैं
पहले बेस विंडो से राइटर खोलें
इसके लिए फाइल न्यू और फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करें
अब हम राइटर विंडो में हैं
मौजूद डेटा सोर्स को देखने के लिए हम सबसे ऊपर व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और दाता सोर्सेस पर क्लिक करेंगे
वैकल्पिक रूप से हम फ़4 बटन दबा सकते हैं
अब हम लाइब्रेरीमेंबर्स सहित ऊपर बायीं तरफ पंजीकृत डेटाबेसेस की एक सूची देखते हैं जिसे हमने अभी बनाया है
डेटाबेस देखने के लिए डेटाबेस नाम के बायीं तरफ प्लस चिह्न पर क्लिक करके हम इसे खोलेंगे
और हम टेबल्स खोलेंगे
यहाँ शीट1 2 और 3 है
शीट 1 पर क्लिक करें
अतः राइटर विंडो के ऊपर दायीं तरफ हमारा डेटा है
अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस डेटा को हमारे राइटर डॉक्युमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं
ठीक है यहाँ यदि हम ऊपरी टेबल से सारे डेटा को इस्तेमाल करना चाहें तो पहले हम सभी रेकॉर्ड्स यहाँ चुनेंगे
इसके लिए पहले रिकॉर्ड के पहले कॉलम के बायीं तरफ ग्रे सेल पर क्लिक करें
फिर जब Shift की दबाते हैं हम अंतिम रिकॉर्ड के पहले कॉलम के बायीं तरफ ग्रे सेल पर क्लिक करेंगे
ध्यान दीजिये कि सभी डेटा चिह्नांकित हो गये हैं
अब हम नीचे राइटर डॉक्युमेंट पर इसे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करेंगे
फिर हम इंसर्ट डेटाबेस कोलम्न्स शीर्षक का एक पॉपअप विंडो देखते हैं
अतः यहाँ हम ऊपर टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे
और फिर सभी फील्ड्स को बायीं तरफ से दायीं सूची की तरफ खिसकाने के लिए डबल एरो बटन पर क्लिक करें
विभिन्न विकल्पों पर यहाँ ध्यान दीजिये
अभी के लिए हम केवल ओक बटन पर क्लिक करेंगे
और यहाँ डॉक्युमेंट में डेटा का पूरा टेबल है
आगे देखते हैं कि कैसे हम विशेष फील्ड्स को जोड़ सकते हैं
राइटर डॉक्युमेंट के ऊपर जायें और दो बार Enter बटन दबायें
फिर से ऊपर बायीं तरफ जायें
यहाँ मेंबर नामे कोलोन टाइप करें
और फिर ऊपर दायीं तरफ में डेटा सोर्स क्षेत्र में नामे कोलम्न पर क्लिक करें
अब हम इसे हमारे टाइप किये हुए टेक्स्ट के आगे क्लिक ड्रैग और ड्रॉप करेंगे
और हम टैब की दबाएँगे और फोन नंबर कोलोन टाइप करेंगे
और हम जानते हैं कि क्या करना है नहीं जानते हैं
हम ऊपर से फोन कोलम्न को क्लिक और ड्रैग करेंगे और इसे अपने टेक्स्ट के आगे ड्रॉप करेंगे
फिर पहले रिकॉर्ड के बायीं तरफ ग्रे सेल पर क्लिक करके पहले रिकॉर्ड को चिह्नांकित करते हैं
और फिर हम दाता टो फील्ड्स आइकन पर क्लिक करेंगे
इसे फ़ॉर्मेटिंग टूलबार के नीचे टेबल डेटा टूलबार के सबसे ऊपर पाया जा सकता है
ध्यान दीजिये कि ऊपरी टेबल का डेटा अब राइटर डॉक्युमेंट में है
एक नया रिकॉर्ड लाने के लिए हमें केवल एक अलग रिकॉर्ड को चिह्नांकित करने की और फिर से दाता टो फील्ड्स आइकन को इस्तेमाल करने की आवश्यकता है
अतः यहाँ हमने सीखा कि डेटा सोर्सेस को लिबरऑफिस डॉक्युमेंट्स में कैसे इस्तेमाल करें
इसी के साथ हम लिबरऑफिस बेस में अन्य डेटा सोर्सेस को एक्सेस करने के इस ट्यूटोरियल की समाप्ति की ओर आ गये हैं
संक्षिप्त में हमने सीखा कि अन्य डेटा सोर्सेस को एक्सेस कैसे करें
odb डेटाबेसेस को पंजीकृत कैसे करें
डेटा सोर्सेस को कैसे देखें
और डेटा सोर्सेस को राइटर में इस्तेमाल कैसे करें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
यह प्रोजेक्ट httpspoken tutorialorg द्वारा संचालित है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
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद